और साइड में नहर पर बहुत ही हरा भरा पेड़ पौधे लगा हुआ है देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और यहाँ पर ईटा पत्थर भी बहुत सारा है देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत--

और यहाँ बोहोत ही तीन मंज़िला ऊपर लंबा है मकान है। दिखने में ज्यादा ही बोहोत ज्यादा खूबसूरत लगता है।

हमको लाइब्रेरी दिखरा है जोकि लिबरारी मे बोहोत सारा बूक रहा है ओर लिबरारी दिखने मे बोहोत ही सुंदर लग रहा है।